यहां मंदिर के अंदर गौतम बुद्ध की तस्वीर रखी है।

चारपाई के पास एक गिलास रखा है गिलास के पास में एक कुत्ता बैठा है।

यह एक पूजा स्थल है।

यह एक बॉक्स रखे हैं।

बंदे बैठे हुए कुर्सी पर खाना भी खा रहे हैं।

कुछ मस्ती काट रहे हैं।

यहां पर सोफे व्हाइट और ब्लैक कलर के हैं।

और ट्वेल के पास एक खाट पड़ी हुई है।

यहाँ पर दीवार पर एक एल_सी_डी लगी है जो कि कैमरे से कनेक्ट है।

यहां पर कुछ कारें खड़ी हुई हैं।